ये एक स्कूल है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं और कमरों का रंग सफेद है और उसके सामने मैदान है जिसमे मैदान के में हैं।

एक साइकिल में दो लोग बैठे हैं।

एक आदमी सइकिल से जा रहा है पीछे एक आदमी चल रहा है एक बड़ा-सा पेड़ है जिसका रंग हरा है बहोत सी दुकाने हैं।

एक बड़ा सा टेंट लगा है टेंट के अंदर एक ऑटो खड़ा है एक इलेक्ट्रॉनिक सा है।

एक कार है कार का रंग सफेद है एक ऑटो है ऑटो में बहोत से लोग बैठ रहे हैं दो बच्चे खड़े हैं जो एक बच्चा पन्नी रखा है।

एक रास्ता है रास्ते में एक ऑटो खड़ी है जिसमें का गेट खुला है और उसके बाहर चार आदमी खड़े हैं।

एक आदमी मास्क लगाया है पीछे एक ऑटो आ रहा है अगर-बगल बीच के पेड़ पौधे हैं जिन का रंग हरा भरा है।

एक बड़ा सा मैदान है मैदान के सामने एक बड़ा सा स्टेज है स्टेज में बहोत से लोग खड़े हैं मैदान में दो आदमी खड़े हैं एक आदमी ब्लैज़र पहना है बगल में एक औरत और एक आदमी है।

दुकान के ऊपर एक पोस्टर है जिसमें लिखा है अनमोल नोट दही घी पनीर रसगुल्ला गुलाब जामुन मिलते हैं एक छोटा सा काउंटर है अंदर एक आदमी ख --

एक छोटा सा मेला लगा है उसमें मेन गेट में प्रणाम लिखा है एक गेट ब्लैक कलर की है बगल में एक छोटा सा दुकान लगाए एक मिकीमाउस है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहै हैं।

एक आदमी जा रहा है एक औरत और एक छोटी सी बच्ची है पीछे बड़ा सा मुकान-दु-मकान है जिस में लिखा है फूड ट्रैक बहोत से अंदर जाने के रास्ते हैं।

एक स्टेशन है जिस मे लिखा है हाजीपुर जंक्शन बहोत से ऑटोरिक्शा खड़े हैं बाहर एक रिकशा मुड़ रहा है। >